काफी सारे लोग यहां पर नजर आ रहे हैं जो ऊपर नीचे जा रहे हैं यहां पर सीढ़ियां लगी हुई हैं।

दिख रही है जो एक फिटिंग में अच्छे से लगाई हुई है।

यहां पर काफी सारी ज्वैलरिया रखी हुई दिख रही है।

सामने आईना लगा हुआ है जिसमें--

जो चाय के साथ ये ले रहे हैं।

और कुछ बच्चे यहां पर गेम खेल रहे हैं।

मटकिया यहां पर दिख रही है दो आदमी यहां पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर--

हाथी की सूंड़ पर बैठा हुआ है शायद ये मिट्टी का बना हुआ हाथी है ये किसी पारक की--

जिसमें खाने पीने का सामान रखा हुआ--

नजर आ रहा है यहां पर बिस्किट --

यहां पर चिप्स कुरकुरे भी दिख रहे हैं जो बच्चे के लिए--

और ग्रीन कलर के बोर्ड पर स्टेट बैंक लिखा हुआ--

म्यूजिक के चीजों की शॉप दिख रही है यहां पर गिटार पियानो ढोलकी--

और छोटे छोटे पियानो भी यहां पर रखे हुए हमें नजर आ रहे हैं।

और ग्रीन कलर की बिल्डिंग यहां पर दिख रही है।